के जो तालाब बना हुआ है। जिस तालाब में पानी भरा हुआ है। अगल बगल पुरे पत्थरे ही ही पत्थरे है और पेड़ पौदे है। घास जमी हुई है। पेड़ पौदे हरे है । बादल नीला और सफ़ेद है।

एक मकान है जो काफी पुरानी पुरानी है और दीवारें भी काफी पुरानी है और बाहर साइड स्कूटियाँ गाड़ियां खड़ी हुई है रास्ता है आने जाने के लिए--

बच्चे लोग इज इधर साइड इ खेल रहे हैं दो बच्चे खड़े हैं पेड़ पौधे हैं हरे भरे हैं फूल भी लगा हुआ हैं बादल हल्का नीला है।

एक सामने रायगढ़ का स्टेशन बना हुआ है रायगढ़ के स्टेशन के ये सामने रास्ते में ऑटो वगेरा गाड़ी स्कूटियाँ खड़ी हुई है।